उस के अंदर कुछ स्टेशनरी का सामान दिखाई दे रहा है।

पेपर में एक बच्चे का फोटो दिखाई दे रहा है।

पेड़ दिखाई दे रहा है बीच में दो आदमी एक लेडिस जाते हुए आते हुए दिखाई दे रहा है।

इमेज इसमें एक बड़ा सा गेट लगाया हुआ है उसपे--

नेम प्लेट लगा हुआ है जिसका नाम है भानु।

और आजू बाजू तार लटका हुआ है एक बैनर लगा।

आदमी खड़े हुए हैं मंदिर के सामने तलाब जैसा दिखाई दे रहा है।

उसी पेड़ के नीचे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है।

इस इमेज पर एक आफिस जैसा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज पर कुछ आदमी काम करते हुए दिखाई दे रहा है।

मंदिर का दीवार मे व्हाइट कलर दिखाई दे रहे --

पीछे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहा है उसके सामने स्कूटी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके सामने छोटे छोटे पौधे लगा हुआ है।

और बारिश हो रहा है पानी दिखाई दे रहा है बिल्डिंग का दीवार दिखाई दे रहा है।

दो तीन चार आदमी जा रहे है होटल के अंदर --

इस इमेज पे ऑफिस जैसा दिखाई दे रहा है इसके अंदर कु--

बैठने का चेयर डाला हुआ है।

और एक छोटा सा स्टूल दिखाई दे रहा है नीचे दो तीन टायर दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक दिखाई दे रहा है पेप्सी थम्सअप जूस माजा ।

और कुछ बिस्किट दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा फ्रीज दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी उसके पीछे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

कुछ उसके नीचे छोटा-छोटा नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है।

हरे भरे के फसल लगा हुआ है।

बिल्डिंग के नीचे एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज पे एक मंदिर दिखाई दे रहा मंदिर के ऊपर इस समय एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है।

इस इमेज को और क्लासरूम स्कूल का क्लासरूम दिखाई दे रहा है।

कुछ लाल कर कलर का कपड़ा दिखाई दे रहा है कुछ बच्चों का भी कपड़ा दिखाई दे रहा है।

शॉप का नाम है शीतल साउथ इंडियन कॉर्नर ।

दाल बडा मेनू वड़ा मसाला डोसा जिसमें इमेज भी है।

इस इमेज पर बड़ा सा एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

फंक्शन जैसा चल रहा है एक आदमी सूट --

आअ गोल्डन कलर जैसा दिखाई दे रहा है दीवार में एक फ्रेम टंगा हुआ है।

उसमें एक दीवार दिखाई दे रहा है उस दीवार से कुछ पानी निकल रहा है।

इस इमेज पर पीछे बिल्डिंग जैसा दिखाई दे रहा है।

पेड़ के आजू बाजू में कटा हुआ पेड़ डिजाइन बना हुआ है पीछे एक बड़ा सा--

मूर्ति के पिछे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

इसके झूमर के जस्ट पीछे साइड में बहुत सारे झूमर उपर दिखाई दे रहा है ओ जो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

और एक दो आदमी खड़ा हुआ है बाल काट रहा है।

और उसके नीचे कुछ लाल कलर के सामान रखा हुआ है।

का दुकान में खड़ा है कुछ वेफर्स टांगते हुए दुकान में दिखाई दे रहा है।

इस इमेज पर रेस्टोरेंट जैसा दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट के सामने --

पीछे एक आदमी कुछ हाथ में ले के पी रहा है।

जो पाइप जोड़ने का काम और कुछ का भी चेयर पर दिखाई दे रहे हैं।

इसका नाम लिखा हुआ है पीछे सूरज आता आसमान में --

उसके बगल में एक आदमी कुर्सी को पकड़ कर खड़ा है। उसके बगल में कार्टून रखा हुआ है। कुछ चेयर दिखाई दे रहा है।

उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट का नेम प्लेट लगा हुआ है उसके बगल में।

इस इमेज पर एक स कोल्ड ड्रिंक का शॉप दिखाई दे रहा है उसके सामने बड़ा सा फ्रिज रखा हुआ है।

और बहुत सारे नेम प्लेट लगा हुआ है उस--